और यहां बहुत सारे यहां पर पत्ते भी दिखाई दे रहे है जो हरे है।

यहां पर बहुत ही सारा सामान रखा गया है यह थैले में रखे गए है।

यहां पर बहोत से बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने कपड़े पहन रखे हुए हैं।

बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी दुकाने है यहां पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं जो ब्लैक और व्हाइट है।

और यहां पर कांच का एक बहुत बड़ा टेबल भी है और यहां पर बोर्ड भी लगा है ज जो नीले कलर का --

और बाहर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहां पे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

यह एक घर है इस घर में एक ए_सी लगी हुई है।